इस फोटो में मुझे पेड़ नजर आ रहे--

इस फोटो में मुझे हाथी नजर आ रहा--

चेंबर नजर आ रहा है इस फोटो में।

फोटो में मुझे लोग नजर आ रहे हैं इस फोटो में मुझे लाइट नजर--

मुझे मां गायत्री का सर्विस सेंटर --

मुझे कुर्सी नजर आ रही है इस फोटो में मुझे स्पीकर --

इस फोटो में मुझे टेबल नजर आ रही है इस फोटो में मुझे कुर्सी नजर--

इस फोटो में मुझे कांच नज़र आ रहा है इस फोटो मे मुझे--

इस फोटो में मुझे मशीन नजर आ रही है।

मुझे पन्नी नजर आ रही है इस फोटो में मुझे वायर नजर--

गमला नजर आ रहा है इस फोटो में।

इस फोटो में मुझे पर्दा नजर आ--

इस फोटो में मुझे कच्चा घर नजर आ रहा--